मेरे सामने एक मंदिर है जो कि काफी खूबसूरत है उसमें एक और सिल्वर कलर का एक कुछ आकार से बनाया गया है।

पे बहुत ही सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो की काफी खूबसूरत हैं।

टेबल पे एक लेडीज पर्स है वहां पे एक पानी का बोतल भी है वहां पे एक थाली में और सारा सामान--

लोहे के अ अ लोहे अ अ लोहे के के सहारे से वो बिल्डिंग बनाया गया है उसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं जो कि कंटेन --

यहां पे वर्कर सब है जो कि अभी चेयर पे बैठे हुए हैं उन्होंने ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ है पेट्रोल पंप --

जो कि ब्लैक कलर से वहां सामने काउंटर है उसकी चेयर ब्लैक कलर की--

ये सामने एक घर है जोकि काफी खूबसूरत है वहां की दिवाले व्हाइट कलर से पेंट की गई है।

मेरे सामने एक मॉल है जोकि काफी खूबसूरत है उसमें काफी सारे कपड़े लटकाए गए हैं वहां पे एक--

यहां पे एक आंटी है जिन्होंने हरे कलर के सूट पहनी हुई है। वहां पर ऊपर से बहुत सारे लाइट जल--

कुर्सी लगाए गए हैं जो कि वाइट कलर के ऊपर जो ऊपर से कपड़े से ढके गए हैं नीचे --

दरी बिछाए गए हैं जो कि हरे कलर के वहां पे बहुत ही सारे--